बोहोत ब्यूटीफुल है जिसकी संख्या हैं सोलह से सतरह |

और पीछे में उनके एक उ वृक्ष का पेर है काफी सुन्दर है।

कार बनाने की एक गैरेज हैं जिसका कार का बोनट खुला हुआ है ब्राउन कलर की कार है दो चक्के खुल के अगल बगल में रखी हुई है काफी टूल्स हैं।

और यहाँ पर कोई मैकेनिक अभी फ़िलहाल में नहीं हैं।

काफी कचरा लगा हुआ है चुकि सब्जी मंडी में काफी कचरा ही होता है।

लाल मंदिर है जिसमें तीन कलर है पिंक है गोल्डन है रेड है गेट लगी हुई है।

होटल है होटल काफी अट्रैक्टिव है | होटल के दीवार पे बोहोत खूब सुन्दर एक इमेज लगी हुई है दो तीन इमेज लगी हुई है| बल्ब जल रही है।

बच्चे हैं जो पार्टी - बर्थडे पार्टी मना रहे हैं।

टेंट लगी हुई है टेंट के अंदर में बहुत सारे पुरुस महिलाए बच्चे खड़े हैं |

और गेरेज के अंदर में कोई व्यक्ति नहीं है सुनसाना जगह पर बना हुआ है।

इसमें कुछ अस्तम्भ लगी हुई है बहुत सारे पर्यटक जो हैं खरे हैं समुन्द्र की दृश्य बोहोत ही अच्छी लग रही है देखने में और निचे फर्श बनी हुई है सीमेंटड ।

और दुकान के ऊपर रेलिंग पे एक पर्दा लगी हुई हैं बैनर लगी हुई हैं जिस पर एक लेडीज की चित्र हैं।

डांस कर रही है जो रूम के अंदर काफी डोकोरेट किया हुआ है और खरी होके पोज़ में है और फर्श पे बोहोत सारे पताके बिखरे हुए है रंग बिरंगे जो काफी--

पुरुस बरे मछली को देख रहे हैं और उनके पीछे एक महिला बैठी हुई हैं और एक लड़का भी बैठा हुआ नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति टीशर्ट पहन के खड़ा हुआ है। एक व्यक्ति टब लेके रखे हुआ है।